यह बैंक्वेट होल है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां लगी हैं और वो कुर्सियां एक लाईन से लगी है।

ताकि लोग उस फ़्राक को देखे और उन्हें अच्छा लगे और वो दुकान में आये और कपड़े ख़रीदे।

ये एक पहाड़ी जगह है जहां पे बहुत खूबसूरत-खूबसूरत पहाड़ है यहां एक आदमी जो कि ब्लू जीन्स और जैकेट में है।

ये मछली मार्केट है जहाँ एक औरत बैठ के मछलियाँ बेच रही है।

वो मछलियाँ बहुत ताज़ी है और आसपास और भी लोग है जो मछलियाँ बेच रहे है यहाँ पर और भी तरह तरह की मछलियाँ है।